जी हाँ योगा करके अपन शरीर ला लचीला बनात हे यहाँ एक जी सब के योगा सिखावत हवे और सब कोई योगा करत हवे और सिखत--

बिल्डिंग घर ओर आहे और बगल अगल बगल मे दुकान हवे और रोड के बगल में पेड़ रुख खंबा उंबा --

इहर एक गणेश भगवान का मूर्ति हवे जेला पालकी में बैठारके शहर भर में गुमावत ह--

और पालकी में ओला राति घुमावत हवे पालकी में एकदम लाइट बरत आहे एकर वजह से चमकत हवे असु फुलवन में सजावल ह।

अउ राती का प्रोग्राम करथ हवे अउ सब कोई जुट के नाचत गावत हवे अउ एक कति ऊपर कति सजाल --

ऐ मन घर बनाइ व ढलाई करत हन घर बनाए व खम्भा ढलाई करके खम्भे बनावट हन।

इँहा ला प्रोग्राम होवत हवे।